और यहाँ पे महिला छै बैठला पुरुष छै बच्चा सब छै खेल कूद करि रहल छै लाइटिंग बढ़िया छै।

एक किराना दुकान छे ।